सुंदल कार के लिए हैं।

का लोगा लोगो एवं --

सामने दिख रही सब्जी हाट --

किया जा रहा है।

डाक्टर प्रयोगशाला --

एक लैब में गुब्बारे एवं --

दिख रहा है। दो तरह की घासें लगी हुईं हैं। एक हरी एवं --

जा रहा है। ये वह आनंद उत्साहित कर रहा है।

सरस्वती मां के चरणों में --

और वो बोहोत --